ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई दे रहा है आसपास काफी मार्बल और अच्छी सजावट की गई है।

एक से दो व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है आसपास काफी कंकड़ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं आसमान काफी साफ नजर आ रहा है।

अलग अलग डिजाइन द्वारा अलग अलग प्रकार की है पीछे पंखा लगाए ऊपर की तरफ रसगुल्ले लगाकर रखे गए हैं।

इस फोटो में कौन कुछ नया घर या मकान बने बनता दिखाई दे रहा है इसमें ईंटें मिट्टी वगैरह है।

उन्होंने अपने पीछे एक छोटा वर्बल बोर्ड भी लगाया है नंबर वगैरह भी काफी अच्छे हैं चाय कॉफी भी पी रहे हैं।

इस फोटो में किसी मंदिर का फोटो है जिसमें व्यक्ति खड़ा होकर इनकी पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति अंदर की ओर झुका हुआ है।

कुछ लोग हैं जोकि आगे स्टेज पर बैठे हैं और जोकि एक व्यक्ति है जोकि भाषण दे रहे हैं बाकी व्यक्ति सुन रहे तो काफी अच्छा फी --

व हल्के ब्ल्यू कलर की पैंट पहनी है जूते पहने है कुछ दो तीन कड़िया दिख रही है जो काले कलर की और लाल कलर का बड़ा बोर्ड है जिसपे व्हाइट कलर मे लिखा है।

ऊपर भी काफी अच्छी इस ओर बिल्डिंग है और नीचे भी काफी सारे लोग खड़े हैं।

ये किसी स्कूल या फिर कुछ अलग अपार्टमेंट का फोटो है काफी धुंधला भी है।

इस फोटो में किसी सी डी डी काल करके नाम लिखा है पास में ए_टी_एम का भी है।

इस फोटो में काफी सारी बाइक और गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में किसी कटिंग की दुकान का फोटो दिखाई दे रहा है जहां के अंदर ए_सी भी लगी है बाल काटने की दुकान का फोटो ऊपर कुछ क्रीम वगैरा लगाने वाले भी --

पंखे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पीछे भी हैं कुछ आगे भी हैं पंखो में दो तीन चार पांच छह करके ताड़ी हैं।

इस फोटो में कुछ पहाड़ पर कुछ लोग चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे है काफी पहाड़ है ऊपर की ओर से --